नदी के सामने ही एकदम हमे एक काले कलर की बाइक दिख रही है। साथ ही उसके दाहिने ओर सीमेंटेड ब्रिज भी --

यह एक पुरानी एक मंजिला इमारत है जो की ऐतिहासिक रूप से हमें नजर आ रही है बहुत ही पुराना किला या कोई इमारत है।

इस फोटो में हमे एक व्यक्ति अपने बच्चे के साथ पूल की नीचे खड़े होके पानी में पाव भिंगते हुए नजर रहा --

शिमोगा नामक प्रीमियम चाय का प्रचार दिख रहा है साथ ही नीचे में रिंग का प्रचार --

यह एक दुकान का चित्र है जिसका नाम सारा इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है।

जैसे मेडिकेयर सैनिकेयर आदि सामान हमें यहाँ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ दाये साइड मे हमे उकाय के एक बैटरी भी देखने को मिल रहा --

यह एक क्रेन का दृश्य है जो किसी पेट्रोल पंप का है। इस क्रेन के आगे दो पहिए हैं और पीछे चार पहिए हैं।

और इसके किनारे-किनारे पे चांदी और सोने के रंग का लकीरें परत दी गई है।

यह एक बाजार का दृश्य है। बाई ओर हमें बहोत सारे हार्डवेयर के दुकान दिख जा रहे हैं। बीच रास्ते पे एक व्यक्ति काले रंग के कपड़े पहनकर चलता हुआ नजर आ रहा है।